तो जैसा कि आप देख--

सकते हैं यहां पर--

सब ते हैं यहां पर एक--

सकते हैं यहां पर एक बहुत बड़ा डैम है।

बहोत बड़ा मंदिर है और यहां पर एक--

तो जैसा की आ--